और पीछे शिव भगवान की मूर्ति है।

यह एक कंपनी है कंपनी में कुछ वर्कर काम कर रहे हैं।

यह एक पहाड़ है जहां पर रस्ता जा रहा है।

और दफ्तर के पीछे कुछ घने पेड़ खड़े हुए हैं।

और कुछ यात्री खड़े हुए है।

यह एक रेस्टोरेंट है जहां पर दो प्लेट में दो बर्गर रखे हुए हैं।

यह एक कैंटीन है कैंटीन के बाहर दो कुर्सी रखी हुई है।

और बहोत सी चेयर रखी हुई है।

और उसके सामने दो पेड़ खड़े हुई हैं एक बराबर में खड़ा हुआ है।

बीच में एक झंडे का डंडा खड़ा हुआ है।

कुछ बिल्डिंगे पीले कलर की दिखाई दे रही है।

जहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।